बाहर से कहीं से आए हुए हैं और अपने शहर में आके ये लोग जो है अपना नाटक के माध्यम से लोगो को और जागरूक कर रहे हैं दिखा रहे हैं नाटक जो है कला अपना कला दिखा रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत कला है और ये लोग बंगाल से आये हुए।

इस्तेमाल किया जाता है उसे और रबर स्विमिंग में लोग जाते हैं और इंजॉय करते हैं तब इसी में एक लड़के जो है रबर से कर रहा है और देख रहा है।

यह जो है प्रशासनिक भवन है प्रशासनिक भवन बहुत ही बड़ा भवन है और ये भवन जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार भी नहीं हुई है।

ये जो है सो बहुत ही अच्छा पिक्चर है इसमें जो है चार महिलायें खड़े हैं चारों महिलायें जो हैं वो श्वेत वस्त्र में है और इनके शरीर पर जो है उजला वस्त्र है और ये लोग जो है --